यह एक अअउम हवाई अड्डा दिख रहा है जिसका जिसमें कई लोग बैठे हुए हैं कई लोग खड़े हुए हैं ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ।

यहाँ एक मेडिकल की शॉप दिख रही है एक आदमी सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहा है जो सेल्फी मोबाइल की तरफ देख रहा है कोच लगी है पंखा लगा है लाइट जल रही है पिंक कलर की दीवार --

एक बाबा आ रहे हैं जो सभी लोगों को कुछ दिखा रहे हैं।

अहे बायर दिख रहे हैं। रूम नंबर चार लिखा हुआ है। पर्दे की बॉउन्ड्री लगी हुई है। व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हैं। पुरे में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है।

यहां बच्चे बॉल खेल रहे हैं। कई लोगो ने ड्रेस पहनी हैं व्हाइट कलर की पीले कलर की येलो की ब्लू कलर की। बॉल है व्हाइट कलर की है। जाली लगी हुई है।

यहाँ छट की पूजा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने साड़ी पहनी है कई लोगों ने धोती-कुर्ता पहना है कहीं बच्चे दिख रहे हैं। नीचे एक छोटी-सी नदी बनाई गयी है जिसमें पानी दिख रहा है। रेल --